यह एक योनो एस_बी_आई एक डिजिटल बैंकिंग प्लेटफार्म में जो भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रदान किया गया है।

और अलग अलग समान रखे हुए हैं फर्नीचर लगा हुआ है ये एक मोटा सा कमरा है।

अनेक प्रकार के पोड़ पौधे लगे हुए है यहां पर एक--

आदमी के हाथ मे व्हाइट कलर का फूल लिया हुआ है और बहोत ही घना जंगल है।

उसे मकान के दो गेट लगे हुए हैं इस मकान के गेट के नीचे एक निसरनी लगी है जो ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां जैसी है।